दो शख्स खड़े हुए हैं यहां पर काम करने वाले।

शेड बना हुआ हैं बहोत सारी चीजें है।

ऐसा लग रहा है ये किसी नए घर की रेनोवेशन कर रहे है।

ये एक न्यू चमचमाती हुई गाड़ी है।

फोटो लगी हुई है बहुत ढ़ेर सारे बच्चे बैठे हैं

पीले कलर का कपड़ा सलवार कमीज पहन रखा है पीले और व्हाइट कलर का।

झूला चल रहा है हरे कलर का है पीले कलर कुर्सियां उसकी दो पीले कलर की हैं।

कपड़े की शॉप है जहां पर डिफरेंट टाइप्स के तरह तरह के कपड़े लगे हुए हैं।

कुछ रखे एक पंखा रखा हुआ है।

ये एक पार्क है यहां पर ढेर सारे हरे हरे पेड़ लगे हुए छोटे छो--

पेट्रोल कोई नहीं भर रहा है पेट्रोल की मशीन ऐसे पड़ी हुई है सोच रहा है वो लड़का कुछ।

हरे कलर की कुर्सियां रखी हुई हैं टेबल रखा हुआ है।

ऊपर से दिख रही टाइल्स लगी हुई हैं।

यहां पर कुछ लोग खड़े हुए इधर नंगे पैर कुछ लोग--

अंडरवियर में है कुछ लोग।

और स्नान करने सूर्य दादा को आर्ग दे आर्ग दे रहे हैं और स्नान कर रहे हैं कुछ लोग ने हाथों में कुछ पहन रखा है।

इसमें नदियों में कुछ नदी में बहा रखा--

ये एक जिम की इमेज है।

और ढेर सारी मशीने रखी हुई है।

यहां पे ब्रांडिंग और अच्छी है इस लेवल लगा हुआ है।

ग्रीन सरफेर पेंटिंग हो रखी है।

और सेंटर भी बहोत अच्छा है कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

और बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है

मैट पड़ा हुआ है एक दरी पड़ी हुई है लाइट जल रही है पंखा चल रहा है।

तीन चार पंखे हैं कुछ पंखे चल रहे हैं कुछ बंद ये रुके हुए हैं लाइट जल रही है।

तीन चार पंखे लगे हुए हैं कुछ फूल्स बॉक्स रखे हुए हैं गिफ्ट्स रखे हुए हैं।

ए_सी लगी हुई है लाइट्स खुली हुई है।

दूसरा बंदा भी खड़ा होके देखी रहा है।

ये एक माउंटेन फॉल की है बहुत हुआ है।

घास हैं पौधे हैं पानी है दीवाल है और कुछ नहीं है।

ये एक रेस्टोरेंट की इमेज है जहां तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं।

लाइट जल रही हैं ए_सी चल रही हैं।

रात का टाइम है मार्बल पे कुछ लोग कुर्सियां बैठे हैं कुछ कुर्सियां खाली हैं।

एक आ रहा है एक गेट पर है और ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ब्लू एंड व्हाइट में पट्टी हैं पेड़ों में रंग हो रखा है।

पार्क है जहां पर एक झूला लगा हुआ है झूले का कलर पीला और स्काई ब्लू है।

और जमीन है जमीन के नीचे घास है।

कुछ ऑटो हैं कुछ लोग कुछ परचेस कर रहे हैं।

यह दीवाल है दीवाल पे ईटों की तरह से--

कंप्यूटर रखा हुआ है कोने में अलमारी ढेर सारी रखी हुई हैं।

और टाइल्स लगी हुई है सोफे जो है उनके नीचे का जो पिलर है वो स्टील का है।

ये एक बार्बर की शॉप है यहां पर एक बार्बर ने --

एक स्टील का अंदर जाने के लिए लगा हुआ है।

पगड़ी पहने हुए हैं। कुछ लोग कुर्ता पहने हुए हैं। कुछ लोग टी-शर्ट में हैं।

फेसबुक का ऐड है जिसमें लड़की फेसबुक का ऐड कर रही है।

और कुछ पीले और रेड में भी है दो कंप्यूटर रखे हुए हैं।

दो चेयर रखी हुई हैं कंप्यूटर व्हाइट और उसके पे रखे हुए हैं।

और मेनू रखा हुआ है टिशू पेपर रखे हुए है रिजर्व का टैग लगा हुआ है।

एक मशीन रखी हुई है जिससे हवा भरी जाती है।

और एक बैठने के लिए सामान रखा हुआ है।

दो ए_सी ऊपर है एक ए_सी नीचे लगा हुआ है कुछ बाइक खड़ी हुई हैं।

कुछ बाइक खड़ी हुई हैं हेल्मेट रखा हुआ है जनरेटर रखा हुआ है।